उसके साइड में लोहा का ग्रील है वहाँ पे दो आदमी खड़ा है।

बहुत अच्छा लगता है देखिए कितना सुन्दर है जटी मैया का मम अथी बनाया गया है कितना सुन्दर वहाँ एक लड़का खड़ा --

यह एक रूम है। इसमे उम परेड कराया जा रहा है।

कितना सुन्दर कितना इस पे सीढियाॅं है। हम लोग भी ब्रिज पे जाते हैं बहोत मजा आता है बहोत सुन्दर लगता है।